चित्र मे इमारत दिखाई दे रही है इमारत पर बड़े -बड़े अक्षरो मे पिक्चर लगा हुआ है।

चित्र मे एक बड़ा-सा पंडाल दिखाई दे रहा है पंडाल पर एक बड़ा चिन्ह बना हुआ है।

दीवार पर बड़ा सा पाइप लटकाया हुआ है सामने खाली बक्से नजर आ रहे है।

नीचे पाइप बिछा हुआ दिखाई दे रहा है बाजू मे छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहे है सामने बड़े-बड़े पेड़ नज़र आ रहे है।

खंबों पर लाइट लगी हुई है अगल-बगल छोटे बड़े पेड़-पौधे नज़र आ रहे है सामने एक बड़ी इमारत है।

मे सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर कई सारी गड़िया नजर आ रही है बीच मे छोटे-छोटे पौधे दिखाई दे रहे है।

चित्र मे एक बड़ी इमारत दिखाई द रही है इमारत मे कई सारी खिड़किया नजर आ--